यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान दिखाई दे रहा जिसमें पंखा--

देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है यह नजारा।

यहां पे हमें समुद्र का किनारा दिखाया दे रहा है जिसमें --

एक टेबल हैं और टेबल के ऊपर एक प्लेट रखा हुवा हैं जो की--

और पानी उसका हरे कलर का दिखाई दे रहा है।

जिस को अच्छे से सेफ्टी करके जाली लगा के रैक बनाया गया है।

दोनों दरवाजे के दोनों बगल में--

आदि सब दिखाई दे रहे हैं इसमें अलग-अलग प्रकार के मॉडल --

एक आदमी पत्थर पर खड़ा है और--

इसमें फिसल के आने के लिए पानी में बना हुआ है।

और जो कि देखने में बहुत ही अच्छा और भरा दिख--

और सामने ऊपर की तरफ बल्ब जल रहा है वाइट कलर में--

ग्राउंड के जैसे दिखाई दे रहा है ऊपर के तरफ--

सामने तरफ एक साइकिल से आदमी जा रहा है और एक बाइक पे बैठा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक मस्जिद दिखाई दे रहा है।

का कलर पीला और वाइट और आसमानी कलर से रंग गया है।

पेड़ के रेलिंग के जैसे बना हुआ है।

अर बहोत सारे इसमें लेडिस बच्चे और जेंट्स लोग हैं।

यहां पे बरांदे में दो आदमी बैठे हुए है।

जो कि देखने में काफ़ी सुन्दर दिख रहा है इसमे--

अच्छे प्रकार का लकड़ी का ही डिजाइन बनाया गया है।